इस फोटो में आप देखगे तो इस यह भी कपड़े की दुकान है।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो ये बहोत पुरानी बिल्डिंग है। मुझे लगता है ये कि सौ-डेढ़ सौ साल पुरानी बिल्डिंग है।

इस तस्वीर में अगर आप देखगे तो ये भारतीय स्टेट बैंक चाम चामराज नगर का है।

ये साउथ इंडिया की तस्वीर है।

इस तस्वीर में आप देखगे तो एकसिस बैंक ऑफ़ इंडिया का ये बैंक है।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है।